एक लकड़े का बनाया हुआ गेट --

बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है।

किन्तु कोई व्यक्ति इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है।

बहुत स्-सुन्दर-सुन्दर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इसके अंदर कुछ हरी घास है और ऊपर खुला आसमान सुन्दर दिखाई दे रहा --

शेषनाग के ऊपर लेटे हुए मंदिर के सामने इस मूर्ति में मूर्ति के आकार में बनाकर दिखाए गए हैं।